यहां बच्चे आकर साइकिलें खड़ी करते हैं।

और आस पास बहोत सारे मंदिर है।

इस तस्वीर में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

मज्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं।

कोई गाड़ी आए और आ कर जाए।

यह एक जंगल है यहां का वातावरण बहोत ही सुहावना --

इस जंगल में दो हिरन भी खड़े हुए हैं।

यह दुकान बहुत अच्छी लग रही है वैसे यह दुकान नहीं शोरूम कही जाती है।

ये बहरी पेड़ों से पेड़ों से लदे पहाड़ नजर आ रहे हैं और आस पास बहोत सारे मंदिर हैं।